उस पे गणपति कैटर्स लिखा हुआ और नीचे टेबल है जिसपे कुछ बर्तन और डब्बे रखे हुए है।

यहाँ पे गौतमबुद्ध की प्रतिमा रखी हुई है जो गोल्डन कलर की है।

शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक जगदलपुर ले हवय और निचे मे एक कार खड़ी है।

जो बेच रहै है कुछ और सामने मे एक आदमी खड़ा है जिसके दोनों हाथो मे फूलो का गुच्छा है।

यह पे एक शटर है जो येल्लो कलर का है उसपे आंध्रा बैंक लिखा हुआ है।

और यहाँ पे कुछ खेत नज़र आ रहे है जहाँ पे मिट्टी दिख रही है और कुछ छोटे-छोटे घाँस है और पीछे में पेड़ दिख रहे है।

यहाँ पे एक पूल है जिसके ऊपर लोहे की रेलिंग है और नदी के अंदर एक कंक्रीट का वॉल जो सफ़ेद रंग है।

और सामने मे एक छोटा सा शेड वाला रूम है जो ब्लू कलर का है एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा है जिसके निचे वाइट पेंट किया हुआ है।

बस के आगे दो लोग चल रहै है और यहाँ पे सीढ़ी राखी हुई है और एक ऑटो रिक्शा दिख रही है।

यहाँ पे बहुत ही सुंदर डेकोरेशन दिख रहा है और एक गेट बना हुआ है जो ए शेप में है और उसपे फ्लावर्स से डेकोरेशन किया हुआ हैं।

तारपारा लिखा हुआ है और निचे वाल का कलर पिंक है और यहाँ पे एक गेट दिख रहा है जिसमें लोहै के ग्रिल्स लगे हुए है।